यह एक दुकान है यहाँ पर जो है मैग्गी मसालामीट मसालामैग्गी जाने क्या क्या जो है यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर दुकान में जो है ये लोकल की दुकान है। यहाँ पे जो है जरूरत का पूरा सामान मिल जाता है जैसा आपका दालशक्करतेलबड़ी कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।

यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ देखिये यहाँ पर पानी की बोतल है ठंडा है कोल्ड ड्रिंक है मीट मसाला काजू बादाम हर चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आ रही हैं और चीज़ जो है बिस्कुट वगेरा नज़र आ रहा है | बोहोत अच्छी दुकान है और हर चीज़ मिल जाएगी आसानी से आप भी जा सकते हो ले सकते हो बोहोत --